को ठीक किया जा रहा है मिस्त्री द्वारा और एक कार है जिसका इंजन खोला हुआ है और यहाँ पे एक टायर भी खुला है।

टायर दुकान है जहां पे टायर सिईऐटी का मिलता है और ट्रैक्टर का टायर है।

अ साईड में बोहत सारे पेड़-पोधे हैं और ऐ बोहत ही खूबसूरत लग रहे हे देखने में।